यहाँ एक पेट्रोल पंप है देखने में काफी साफ़ है और यहाँ पे जो दो लोग खड़े हैं सेल्फी ले रहे हैं और सामने में कोई गाड़ी नहीं दिख रहा है यानि की पेट्रोल का बिकाऊ नहीं हो रहा है इसीलिए यहाँ पे धंधा काम चल रहा है।

यह एक क्रिकेट क्रिकेट का फील्ड है यहाँ पर काफी लोग क्रिकेट खेलने आते हैं और कुछ लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो कि आपस में कोई गुब्बारे लेकर घूम रहे हैं कोई वैसे घूम रहे हैं बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

एक स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारी बस रखे हुए हैं दो बस दिख रहे है साइड में एक ऑटो है और ए एक आदमी जा रहे हैं एक आदमी ऑटो की तरफ देख रहे है और एक आदमी उदर है जंगल की तरफ।

यह एक बहुत ही छोटा सा नदी है जिसमें ओर से पत्थर से घिरे हुए हैं और साइड में एक --

यहाँ एक मेन रोड है इसमें बहुत --

यह है कुछ खाने की चीज़े जो बहुत ही टेस्टी लग रहे है और वहाँ पे जो चटनी है वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे एक चम्मच है और एक चाकू रखा हुआ है बहुत --